बहुत सारा लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहा है कुर्सी मे टेबल रखा हुआ है वहा के पढ़ रहा है अख़बार --

स्कूल ड्रेस में सब सेलो टेप भी है।

बाहर से कोरी एक डाल दिया है।

और ये सैम पब्लिक स्कूल सुपौल लिखा है।

बहोत लोग है यहाँ सब खेलने के लिए आया है। सामान बेचने --

और कोई पोस्टर लगाया है बड़ा।